और एक लाइट का खम्बा भी लगा हुआ है और जोकि ग्राउंड है उसमे घास लगी हुईं है और कुछ कच्चा रोड है।

यहाँ पर एक प्लेट राखी हुई है और जो कि उसमे केक है ।